ई रोड हम् । टेंपू ह। बाइक खड़ा बा टेंपू बा। ओप मशीन लादल बा।

बड़ा घर बा हैनल बा एक आदमी अंदर बा और बाहर बाइक खड़ा बा आदमिया बइठल बा।